पुतला कपड़ा पहने दिखाई दे रहा है साइड में आई लव गोवा लिखा दिखाई रहा है सामने ब्लँक जगह दिखाई रही है और ऊपर छत दिखाई दे रहा है।

मुझे एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में सामने एक बड़ी सी ऐल_ई_डी दिखाई दे रही है व्हाईट कलर की दिखाई दे रही है सामने ब्लू कलर की कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है।

ऊपर छत में बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे है पीछे कोई जगह खाली दिखाई दे रही है साथ में एक आदमी कोने में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

मस्त टमाटर दिखाई दे रहे है मुझे पोटेटो दिखाई दे रहे है एक फ्रीजर रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ आयटम रखे हुए दिखाई दे रहे है सामने भिंडी दिखाई दे रही है और पपीता दिखाई दे रहे है निचे एक तसला दिखाई दे रहा है जिसने कुछ भरा--

मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट में कुर्सी टेबल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुर्सी टेबल पर हा प्लेट और गुलदस्ते रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड मैं दो बैनर दिखाई दे रहे है और आ सामने एक मोटरसाइकिल खडी हुई दिखाई दे रही है बगल मैं दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी और दिखाई दे रही है ऊपर एक घर दिखाई दे रहा है साइड मैं एक दीवाल दिखाई दे रही है और अ सामने --

मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के दोनों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है एक छोटा सा नीला बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

मुझे एक रोड दिखाई दे रहा हैं रोड पूरा सीमेंटेड दिखाई दे रहा हैं रोड के साइक में एक ऐ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जिसपे नीले कलर से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

के निचे दो खिड़किया दिखाई दे रहे है साइड में हरी हरी घास दिखाई दे रहे है साइड में एक पेड़ दिखाई दे रहा है घर के जस्ट सामने एक दीवार दिखाई दे रही है।

मुझे एक स्कूल का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे जगन्नाथ इंग्लिश हाई स्कूल --